सामने तंबू गेरा हुआ है जिस के उपर में दिखता है तम्बू ग्रीन कलर की है साइड में कुछ बॉक्स रखे है जो की ब्लू एंड रेड कलर के है ऊपर आसमान पूरा ब्लॉक है।

आसमान व्हाइट है नीचे कुछ कागज के टुकड़े पड़े हुए हैं व्हाइट कलर के कुछ छोटे-छोटे कज है नीचे की जमीन व्हाइट है साइड में घास वगैरा काले दिख --

कुछ के सर मे गमछा लपटा हुआ है यहाँ सामने में कुछ साइकिल रखी हुई है एक आदमी जा रहा है हाथ में एक बाल्टी एक टिफ़िन लेके सामने में इलेक्ट्री की बड़ी सी खुटी लगी --

एक रिक्शा ले के आदमी जा रहे है वहीं कुछ लोग खड़े हुए है दूर मे भी बाइक साइकिल आ रहे है और बहुत सारे दुकान दि --